यहाँ पे लोग आते हैं झूला झूलते हैं टेहैलते हैं उठते है बैठ --

ये बंदगोभी की फसल है। यहाँ बंदगोभिया उगाई गयी हैं। यहाँ पर कई तरह की लगी हुई हैं। बंदगोभिया खेत में उगाई जाती हैं।